रोड क्रासिंग के लिए बनाया गया है। लैम्प्स वगैरह भी है यहाँ पे --

कुछ लोग माइक में खड़े होकर बोल रहे हैं पीछे की ओर जो लोग हैं उनका मुह भी जीसस की ओर है और वो लोग भी खड़े होकर बोल रहे हैं।

बाहर साइकिल बस साइकिल और मोटरसाइकिल स्कूटी बोहोत सारी चीजे खड़ी हुई है।

बीच मे एक सब्जी की दुकान है।

ऊपर पंखे चल रहे है और लाइट भी --

स्टेचू है भगवान के पार्क के अंदर बीच में से फाउन्टन फाउन्टन जा रहा है जिसमे कमल के फूल है।

बहोत सारे तोते और चिड़िया के अंदर है।

और कुछ दाने भी रखे हुए है।

ये फोटो हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी टीचर को कुर्सी पे बिठाया हैं और--

उसी के साथ मे एक पक्का पुल है जो कि उससे ऊंचा है और ऊपर की ओर है।